इस इमेज में जमीन पर मैट बिछे हुए हैं ये मैट लाल रंग के हैं।

यहाँ पर मेज भी रखे हुए नजर आ रहे है यहाँ पर शत पर लाइट्स लगी हुई है और यहाँ पर एयर कंडिशनरर्स भी लगे हुए है ।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

यहाँ पर एक तरफ एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है उस बिल्डिंग में खिड़कियाँ बनी हुई हैं और यहां पर कुछ पेड़ों के हिस्से दिखाए दे रहे हैं|

इस इमेज में तीन गेट नजर आ रहे हैं जो की कहीं अंदर जाने का रास्ता हैं और यहाँ से बाहर भी आया जा सकता हैं।

पेट्रोल पंप की छत पर एक लाइट जल रही है और यहां पर कुछ लोग भी दिखाई दे रहे है यहां पर बिल्डिंग्स में खिड़कियां लगी हुई है और यहां पे आसमान दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में बहुत सारी कुर्सियाँ रखी हुई नजर आ रही है ये कुर्सियाँ लाल रंग की है।

इमेज में काफी जमीन खाली नजर आ रही है यहाँ पर काफी घास उंगी हुई है।

इस इमेंज में एक सड़क दिखाई दे रही है सड़क पर तीन बसे नजर आ रही है और यहाँ पर--

और यहां पर एक प्राणी का कुछ हिस्सा नज़र आ रहा है| यहाँ पर आसमान दिखायी दे रहा है आसमान में सफ़ेद रंग के बादल हैं |

और यहां पर सत पर लाइट्स लटक रही है और ये लाइट्स जग रही है यहां पर प्लास्टिक की बोटलो में कुछ रखा हुआ है।